इस चित्र में हमें एक नदी के किनारे एक घाट का दृश्य दिख रहा है।

घाट में एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है।

हमे घाट से उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी सुंदर और लंबी चर्च की इमारत नजर आ रही है।

बट इसका डिजाइन काफी पुराना और ऐतिहासिक ऐतिहासिक लग रहा है आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

पूरा जगह साफ शांत और सुंदर दिख रहा है।

तस्वीर में एक लकड़ी की अलमारी दिखाई दे रही है।

वॉल पर सफेद रंग किया गया है।

फर्श पर टाइल्स लगी हुई हैं।

तस्वीर में एक बड़ा सा हरा बाउंड्री गेट और रेलिंग दिखाई दे रहा है।

पीछे हमें एक स बड़ा सा सफेद भव्य बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में कई सारे रंग बिरंगे छोटे पक्षी एक पिंजरे में बैठे हुए हैं सभी एक दूसरे के पास बैठ के लकड़ियों पे आराम कर रहे हैं।

कुछ पक्षी नीचे हैं कुछ ऊपर बैठे हैं।

दो पुलिस ऑफिसर पेड़ के पास खरे है।

जमीन पे कुछ पत्थर दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें बहुत बड़ा झील दिखाई दे रहा है।

एकदम साफ और शांत नजर आ रहा है।

किनारों पर पत्थर मिट्टी की ढलान है।

दूर में हमें पहाड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हम एक काली गाय दिखाई दे रही है।

गाय के पास दो लोग खड़े हैं।

गाय के गले में रस्सी बांधी हुई है।

गाय के पीछे हमें एक खुला हुआ दरवाजा भी दिख सकता है। यह किसी आम ग्रामीन घर का दृश्य है।

तस्वीर में हमें एक सैलून का दृश्य नजर आ रहा है।

दो नाई दो व्यक्ति की दाढ़ी बना रहे है।

सैलून बहुत साफ सुथरा दिख रहा है।

शीशे में एक आदमी तस्वीर लेते हुए दिख रहा है।

उनके मालों को सफेद हरे लाल फूलों के उस सजाया गया है।

माना माला के नीचे बोरे में कई सारे फूल रखे हुए हैं।

पीछे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। यह किसी दुकान की तस्वीर है।

बालों का कट साफ सुथरा दिख रहा है।

शीशे पे हमें मोबाइल का फ्लैश भी नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमें एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

मैदान में घास और मिट्टी फैली हुई है।

पीछे एक हरा बड़ा लंबा सा पेड़ भी है।

तस्वीर में कई सारे लोग एक ए_टी_एम में खड़े हुए दिख रहें हैं।

ए_टी_एम का दरवाजा शीशे से बना है।

ए_टी_एम के अंदर ए_सी दो ए_सी लगे हुए हैं।

ए_टी_एम के अंदर दो मशीनें है।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

तस्वीर में एक व्यक्ति ने हाथ पर काफी का कप पकड़ा हुआ है।

पीछे सुंदर पहाड़ का सुंदर दृश्य दिख रहा है।

पीझे एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।

मोर पार्क के रास्ते में खड़ा है।

रास्ते के एकदम आगे एक और चलती हुई दिख रही है।

मोर बहुत सुंदर दिख रहा है।

तस्वीर में हमें एक बड़ा सा फूड कोर्ट दिखाई दे रहा है जिस पर फूड ट्रैक लिखा हुआ है।

सामने कई लोग इधर उधर जाते हुए दिख रहे हैं तस्वीर में कई सारे मोटरसाइकिल और रिक्शा खड़े हुए दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर बालकनी भी नजर आ रहा है।

बाईं ओर रिक्शा में एक आदमी सोया हुआ है।

हमें ऊपर एक थोड़ा सा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक कब ए_टी_एम का बोर्ड दिख रहा है।

गेट के बाहर दो व्यक्ति इंतजार कर रहे हैं।

दरवाजे के सामने व्यक्ति के हाथ में हेलमेट टंगा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें कोई फंक्शन या शादी का प्रवेश द्वार सजाया हुआ दिख रहा है।

गेट पर रंग-बिरंगे लाइटें है और फूलों की सजावट है।

बाहर एक व्यक्ति हरी कलर की शर्ट में गेट की तरफ देख रहा है।

हमें ऊपर एक बैलकोनी भी दिख सकता है जिसके अंदर भी लाइट लगे हुए है।

बोर्ड पर एस_बी_आई लिखा हुआ है जिससे पता चलता है यह एक बैंक है।

सामने से एक व्यक्ति अपना ठेला खींचा हुआ आ रहा है।

प्रतिमा के सामने चार पुरुष खड़े हैं।

चारों श्रद्धा भाव से हाथ उठाए हुए हैं।

प्रतिमा के पूरे शरीर को सोने की मूर्तियां और आभूषणों से सजाया गया है।

इस चित्र में एक अस्पताल का वेटिंग हॉल नजर आ रहा है।

कई लोग कुर्सियां पे बैठे हुए हैं कुछ लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर सीलन पर काफी सारी लाइटें लगीं हुईं हैं पीछे की ओर दवाई या फार्मेसी काउंटर है।

तल काफी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है लोग शांतिपूर्वक से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक सजाया हुआ गेट दिख रहा है।

गेट के नीचे से लोग पैदल साइकिल और मोटर साइकिल से जा रहे हैं।

कुछ बच्चे और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहें हैं।

यह छठ पूजा समारोह का प्रवेश द्वार है।

इस चित्र में एक काले सी लंबी प्लेट में एक स्वादिष्ट डिश परोसा गया है।

बगल में हरी चटनी कटोरी भी रखी गई है।

इस चित्र में हम एक ब्लू कलर की इमारत देख सकते हैं।

इमारत के आगे कई सारे लोग खड़े हैं।

एक व्यक्ति नीली शर्ट मे बाइक के पास खड़ा है।

दुकान के अंदर काफी सारे किताबें एवम अलग समान रखे गये हैं।

इस चित्र में एक दुर्गा पूजा पंडाल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

मंच पर देवी दुर्गा के साथ और भी भगवान की मूर्तियां रखी गई है।

मूर्ति के पीछे बैकग्राउंड को पहाड़ जैसा बनाया गया है।

मूर्ति और मंच को सुनहरे और रंग बिरंगों कपड़ों से सजाया गया है।

सामने कई सारी लोग पूजा करने आये है।

इस चित्र में हमें एक लाल रंग के गुलाबो का गुलदस्ता दिखाई दे रहा है।

हर गुलाब की नन्ही पंखुड़ियो पे हल्की बूंदे जमा है।

गुलाब के हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

गुलदस्ता बहुत ही ताजा दिख रहा है सारे गुलाब के फूल ताजे दिख रहे है।

तस्वीर में एक छोटा सा चर्च के सामने कई लोग खड़े हैं।

चर्च की दीवार पर एक क्रॉस बना हुआ है।

सामने जमीन पर घास दिख रही है।

चर्च की छत पर टीन बिछी हुई है।

कुछ लोग साइकिल से आए हैं और खेल देख रहे हैं।

मैदान के आस पास बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

सभी ध्यान से मैदान की तरफ देख रहे हैं जैसे पत पता चलता है की कोई खेल चल रहा है।

उसमें दो लोग बैठे हैं और एक बाहर खड़ा है।

पीछे हमें और भी ऑटो दिखाई दे रहा है।

पीछे एक बहुत बड़ी सी इमारत है।

गेट के आगे दो लोग खड़े हैं जिन्होंने हाथ में भाला पकड़ा हुआ है।

गेट के पास कई बाईकें खड़ी हैं।

रात का माहौल है गेट से अंदर जाने का रास्ता में लाल कालीन बिछी हुई है।

यह किसी पार्टी या फंक्शन का तस्वीर लगा है।

इस तस्वीर में हमें एक परिवार अपने घर के आगे खड़ा हुआ दिख रहा है।

इन औरतों ने रंग बिरंगी साड़ी पहनी हुई है।

यह सब परिवार एक साथ मिल के छठ पूजा मनाने जा रहे हैं।

बच्चे ने अपने छोटे भाई को गोदी में लिया हुआ है।

इस तस्वीर में रात के समय कई सारे लोग सड़क पर ढोल बजा रहे हैं।

सबने नीले रंग की पारंपरिक पोषाक पहनी है सड़क के दोनों तरफ भीड़ जमा है।

मजदूरों ने सर पे टोपी पहेनी हुई है।

जमीन पर पत्थर या कोयले जैसा समान फैला हुआ है।

यह चित्र किसी बाजार का है।

व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं।

ये लोग मोटर गाड़ी या साइकिल से आए हैं।

तस्वीर में हमें एक फूलों का बाजार दिखाई दे रहा है।

फूल काफी अनेक प्रकार के हैं और रंग बिरंगे दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है इसमें एक व्यक्ति की फोटो और कुछ लिखा हुआ है।

तब बाहर खड़े होके अंदर जाने के इंतजार कर रहें हैं।

इस चित्र मे मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पे है।

की चारो तरफ बहोत सारी लकड़िया रखी है।

मजदूर के पास कुछ नी निर्माण सामग्री जैसे बाल्टीया और सीमेंट के बोरे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक भारतीय डाक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम के चारों तरफ लाल कलर से रंगा हुआ है ए_टी_एम का दरवाजा बंद है।

बाहर कुछ व्यक्ति बाइक पे जा रहे हैं।

ल्हा और दुल्हन फूलों की माला पहन के बैठे हुए हैं।

छे परिवार के सदस्य भी सज धज कर खड़े हैं।

पीछे की सजावट बहुत ही सुंदर की गई है।

नेक अनेक प्रकार के फूल से सजावट की गई है।

नीचे पूजा का सामान बिखरा हुआ है।

इस तस्वीर मे हमे एक चर्च दिखाई दे रहा है।

चर्च की बिल्डिंग का कलर पीले और उज उजला रंग का है।

नीचे रोड पर कई सारे लोग हैं।

तस्वीर में पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे दीवाल पर ब्लू और उजले रंग से रंगा हुआ है।

पीछे कई सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे एक बिजली का खंबा भी नजर दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ी सी मछली एक थर्माकोल के ऊपर रखी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति नारंगी कुर्सी में बैठा हुआ है।

यह किसी मछली मार्केट का दृश्य लग रहा है।

लोग यहां मछली बेचने एवं खरीदने आए हैं।

दोनों तरफ कुर्सी और टेबल सजे हुए हैं।

दीवारों पे कुछ पोस्टर लगा हुआ है।

कमरे के ऊपर एक पंखा भी लगा हुआ है।

पिछे हमे बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

कुछ लोग एक तरफ काम कर कर रहे हैं और बाकी सब खड़े हैं।

इस तस्वीर में हमें कुछ मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं।

वह एक बड़ा सा टाइल्स का पीस एक चक्के पे उठा के लेके जा रहे हैं।

हमें इस इधर एक व्यक्ति फोन चलाता हुआ भी दिख रहा है।

पीछे और भी कई सारे टाइल्स रखे हुए हैं।

तस्वीर में कुछ लोग एक कमरे में बैठ कर चर्चा हुआ करते दिख रहे हैं।

टेबल पे कई सारे कागजात रखे हुए हैं।

छत टीने का है और छत पे एक पंखा लगा हुआ है।